जो इसकी सुंदरता और निखर रही है।

यह एक अंडरगार्मेंट्स कपड़ों की दुकान है।

यहां पर पुरुष के अंडरगारमेंट्स मिलते है।

इस नदी में बहुत सारी नाव खड़ी हुई है जिसमें यहां के लोग इसमें सवारी करते हैं और नदी में घूमते हैं।

इसमें कुछ मैगजींस सीनरी भी लगी है जिससे यह बहुत--

यहां पर कई सारे स्टूडेंट अध्ययन करने के लिए जाते हैं।

इस मंदिर में बहुत सारे पौ पेड़ पौधे भी हैं जो बहुत ही सुं--

दीवालो मैं पुराने जमाने की अलमारियां हैं और एक डॉग भी खड़ा हुआ है।

यहां पर सिम पोर्ट होती है। यह शोरूम की तरह लग रहा है। बाहर शीशा लगा हुआ है।

और यहां कुछ दोस्त मस्ती या इंजॉय कर रहे हैं।

यहाँ मुर्गी के लेग पीस रखे हुए हैं।

चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं और चार लड़कियां जो एक साथ एक जैसा डांस कर रही हैं या यूं कहें कि प्रैक्टिस कर रही हैं।

यहां पर संगीत के सभी समान दिख रहे हैं जैसे ढोलक तबला ताल बांसुरी--

यह एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक मस्जिद दिखाई गई है।

या कहे कि दरगाह है और कुछ लोग यहां पर दरगाह पर चादर चढ़ा रहे है।

और ऊंचे ऊंचे पानी के झूले बने हुए हैं।

यह दृश्य रात्रि के समय का है।

और छत पर तीन चार पंखे लगे हुए हैं लाइटिंग लगी हुई है और ए_सी लगी हुई है।